ग्राउंड के पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ग्राउंड के बाजु में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो की हरे कलर के है इसमें एक बीच में --

और इसके उपर डेकोरेशन का डेकोरेशन दिखाई दे रही है और इसमें कुछ पीले कलर के पडदे दिखाई दे रही है।

और कुर्सिओ के बीच में बहुत सारी टेबले रखी हुई है जिनके उपर आसमानी कलर का कवर चड़ा हुआ है का और टेबल के उपर पॉट रखे हुए है।

और बिल्डिंग के बाहर कुछ आदमी दिखाई दे रहे है और इसमें हरे कलर की मॅट दिखाई दे रही है और दो महिलाये बैठी हुई दिखाई दे रही --

और पीछे एक पवन चक्की दिखाई दे रही है और एक और उपर एक लाल कलर का झंडा दिखाई दे रहा --